इसके पास में एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कलर से पुती हुई--

इस इमेज में एक नदी टाइप की दिखाई दे रही है जिसमे से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पेट्रोपम्प पे दो मशीने लगी हुई है जिसके ऊपर हरे कलर की टिन लगी हुई है।

इसमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो लाल कलर की पुती हुई है जिसके चारो तरफ बाउंड्री होती हुई दिखाई दे रही है कच्ची रोड जा रही है यहाँ कुछ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

तीसरा व्यक्ति पैजामा कुर्ता पहने हुए है उसकी दुर तरफ कुछ लोग और नजर आ रहे है।

ये एक्सर्साइज़ करने का एक ग्राउन्ड सा नजर या रहा है जिसमे एक्सर्साइज़ करने की कुछ मशीनें लगी हुई है और नीचे जमीन पर चौकोर टाइप के टाइल्स बिछे हुए है ।

रोड पर एक लड़की जाती हुई दिखाई दे रही है जो साइकिल से है जो पीछे स्कूल बैग टांगे हुए है इधर की तरफ एक खंबा नजर आ रहा है जिस पर लाइनें बिछी हुई हैं।